बगल में पेड-पौधे जो की हरे भरे-- निचे इट सी गोला बनाकर कुछ लगा हुआ-- घास उगी है जो के हरे - हरे है खिड़कियाँ बंद है।

क्रिसमस ट्री का पेड़ लगा हुआ है गौतम बुद्ध पीले कपड़ों में है वह कांच के अंदर है उसके सामने लाल कलर पुता हुआ है।

ऊपर चोटी किये हुए है नीचे काले रंग की पुताई हुई है नीचे बहोत सारे गुलदस्ते है नीचे की मिट्टी भूरी है घास उगी हुई है जो की सु--

यह शासकीय आई. टी. आई. गोत्मा छत्तीसगढ़ हैं एह आने जाने के लिए रास्ता हैं वि--